आँखों में चष्मे लगे ग्रीन कलर के और जूते पहने हुए साइड से एक पत्थर रखा हुआ है।

अह पक्की सड़क है बगल से और पेड़ पौधे है ग्रेलिंग लगी हुई है बड़े बड़े पेड़-- पेड़ है अम और ऊपर से एक लाइन गई हुई है और बिजली की तार गई।

सामने एक बस है जो की एक ब्लू कलर की और सिल्वर कलर की बस है जिस पर समीर ट्रॅव्हल लिखा हुआ है उसके आगे एक--